यहां पे एक रूम है काउंटर टाइप का बना हुआ खिड़की भी लगी हुई है परछी भी लगी हुई है और यहां पर एक कार वो लगा हुआ है कारपेंटर टाइप का गेट भी लगा हुआ है।

ब्लैक कलर का और ये पर्दे भी लगी हुई काफी मात्राएं में--